छोटे -छोटे डिजाइंस किये हुए स्तम्भ हैं ।

और यहाँ पर एक एमेजिग नाम लिखा हुआ हैं ।

नाई की दुकान पर सेविंग करवा रहा हैं |

यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर्स के पार्ट रखे हुए --

यहाँ पर डिज़ाइन की भी मूर्तियाँ हैं |

अ यहाँ पर हरे कलर की घास जमी हुई हैं ।